वीट के ब्लॉक्स पड़े हुए दिख रहे हैं और राइट साइड पे कुछ घर दिख रहे हैं।

जहाँ पर हमें कुछ लोग फिश बेचते हुए दिख रहें हैं।

दी गई इमेज में बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं।

सामने दी गया जानवर एक बैल है।

दी गई इमेज एक बिल्डिंग के टेरेस की है।

बहोत सारे लोग योगा कर रहे है अपने गुरु जी से सीखते हुए।

दी गई इमेज एक मेले की है जहां पर बहुत सारे स्लाइड्स और अलग-अलग तरह के झूले हैं।

मुझे तो यहां पर बहुत मजा आता है मेरा फेवरेट तो मिक्की माउस और शिप की राइड्स है।

सामने वाला आदमी शेड के नीचे खड़ा है।

जहां पर सामने दाएं तरफ और बाएं तरफ बहुत सारी दवाइयां शेल्फ्स में रखी है।

सामने उनके गुरु एक औरत--

पीछे की तरफ हरियाली भी है और एक शेड भी लगा हुआ है।

एक बाइक एक साइकिल और एक रिक्शा दिख रही है।

इस पैलेस में हर जगह बैठने के लिए सोफा और चेयर दी हुई है।

बहोत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी है टेबल्स है।

एक आदमी बहोत स प पौधे ले रहा है।

सामने की तरफ गाड़ियाँ और ऑटो जा रही है।

पैलेस एक बहुत बड़ा है।

राइट और लेफ्ट साइड पे प्लेटफॉर्म है।

सामने कउऐ और बगुले भी उड़ रहे हैं।

सामने एक पेड़ दिख रहा है।

यह एक बैंक की फोटो है।

सामने दो बड़े से पेड़ है।

यह एक ऑफिस के कैबिन की फोटो है।

यह एक डॉक्टर का कैबिन लग रहा है।

इस हॉल में चार टेबल रखे हुए हैं।

यह एक अग्निशमन केंद्र की फोटो है।

यह एक गुफा की पिक्चर है।